जो काले कलर का टेम्पू हैं और दुकान दिखाई दे रही हैं दुकान के बगल में एक इमारत दिखाई दे रही हैं।

बहुत सारे मजदुर दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने ईंटे बांधने के लिए गमछा बाधा रखा हैं माथे पे --

और एक बिल्डिंग दिखाई दे रही --

दो मजदूर दिखाई दे रहे हैं एक मजदूर ने टोपी पहनी हैं दूसरे मजदुर ने भी पहन रखी हैं।

कुछ ये लोग काम कर रहे हैं एक आदमी ने काले रंग की कमीज पहनी हुई हैं एक आदमी में आसमानी कलर --

और इ पीले कलर की दीवार हैं जिस पर लाल कलर की बाउंड्री बनी हुई हैं और चारो तरफ पेड़ हैं।

पीछे उनके एक गमला रखा है और ये लोग कुछ बना रहे है।

एक मैदान दिखाई दे रहा है और एक पेड़ पर कुछ पंछी बैठे हुए दिखाई दे रहा है पहाड़ दिखाई दे रहा है।

दो टेन्ट दिखाई दे रहे है और चारो तरफ पेड़ लगे हुए है हरे-हरे--

गाड़ी लाल रंग की है और चार - पाँच आदमी है एक आदमी ने काले रंग का स्वेटर पहना हुआ है।

इसमें पेड़ भी दिखाई दे रहे है बहुत बड़ी नदी है जिसमे पानी बेहता हुआ है।